और कुछ घासे भी नज़र आ रही है एक लड़का नज़र आ रहा है दूर-दूर तक काफी सारे पेड़ नज़र आ रहे है और मौसम भी काफी साफ नज़र आ रहा है इसी के साथ मुझे एयरोप्लेन का कलर व्हाइट नज़र आ रहा --।

अ सामने की तरफ दो स्टेचू नजर आ रही है जोकि ने लड़की की स्टेचू है इनने साड़ी पहनी नजर आ रही है ऊपर मुझे काँच नजर आ रहा हैं।

सामने की तरफ मुझे एक रूम नजर आ रहा एक बेड नजर आ रहा है बेड के ऊपर व्हाइट कलर की चादर नजर आ रही है उसके ऊपर चादर राखी नजर आ रही है जिसके ऊपर फूल मंडे हुए हैं।

सामरी तक मुझे काफी सारी साइकिले नजर आ रही है कुछ साइकिले बड़ी नजर आ रही है कुछ साइकिले छोटी नजर आ रही है कुछ साइकिले काफी छोटी नजर आ रही है बच्चों की नजर आ रही है काफी छोटे-छोटे बच्चों की कुछ साइकिले मुझे बेबी की नजर आ रही है रही है जो की फोल्ड करके रखी गई नज़र आ रही है सामने की तरफ और उसकी तरफ मुझे एक डब्बा नज़र आ रहा है ।